मूर्ति कमरे के बीचो-बीच स्थापित है। उसके आजू-बाजू गुलदस्ते रखे हुए हैं।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कूल बना हुआ है| स्कूल का रंग सफ़ेद कलर का है| यहाँ पर कई खिडकियां भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर रंग विरंगी बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। बुक्स लाइन से रैक में जमी हुई हैं। यहाँ पर देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है।

यह दिखने में बहुत सुन्दर है। यहाँ पर टाइल्स भी लगे हुए है जो की बहुत सुन्दर लग रहे है ।

उधर लोहे की छड़े भी सीमेंट के ऊपर डली हुई हैं और लोहे से पिलर्स भी लगे हुए हैं। वहां पर सामने एक कार भी खड़ी हुई है।

यह एक कॉलेज है जो कि दिखने में बोहोत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। यहां पर एक बोहोत बड़ा पोस्टर बना हुआ है। पोस्टर में कॉलेज का मोनो भी बना हुआ है।

यहां पर एक बहुत सुंदर भवन बना हुआ है जो की दिखने में बहुत सुंदर है। एक बहुत बड़ा विशाल भवन बना हुआ है।

और हरियाली ही नजर आ रही है। दिखने में यह दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है।

और एक लंबा चौड़ा कॉरिडोर भी बना हुआ है। बिल्डिंग पिलर्स से खड़ी हुई है। उधर छोटे-छोटे गमले भी रखे हुए --

यहां पर एक बहुत बड़ा कॉलेज बना हुआ है। जिसकी बिल्डिंग देखने में दूर से बहुत सुंदर नजर आ रही है। बिल्डिंग देखने में सही में बहुत बड़ी है।